बहोत ही बड़ा है।

यह एक पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप का नाम इंडियन पेट्रोल पंप है यह--

गोल वाले रसगुल्ले बहुत तरीके से मिठाई मिलती है यहाँ पर आदि सभी चीज मिलती है।

विश्व विद्यालय का उसके बहार में बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है हीरो हौंडा स्प्लेंडर की बाइक भी यहाँ और अपाचे भी खड़ी हुई है।

रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के बगल में एक दूकान है जहाँ पर सभी चीजे कोल्डड्रिंक चीज वहाँ पर मिलती है।

इसमें वन फोर टू डबल सिक्स लिखा गया है।

ये एक बहुत ही बड़ा वर्कशॉप है यहाँ पर बहुत सारी बड़ी-बड़ी काम होती है यहाँ गाय बैठी हुई है यहाँ पर तीन गाय हुई बैठी है।